और इस में हम लोग को करने कुछ--

और इस के बहार बिल्डिंग के बाहर गाड़ी कार गाड़ी खड़ा है।

पोस्टर में लिखा हुआ है टाटा बॉक्स और इसके बाहर में आदमी भी खड़े है ।

पंडाल के ऊपर बहुत लाइट लगे हैं और पंडाल में मेला लगे हुए हैं बहुत सारे छोटे बड़े यहाँ आदमी मेला देखने आए हैं गाड़ी उड़ी दिखा रहा और --

इस फोटो में हमें एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहे है।